यहां एक खाने का काउंटर बना हुआ है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक कार्टून का बॉक्स रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जमीन पर बहोत अच्छे से टाइल्स लगाया गया है।

यहां तीन दरवाजे डिजाइन दार बने हुए हैं।

बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।

यहां दो बाइक पार्क दिख रहे हैं।

यहां पर एक जगह डी डी_ए_वी यूनाइटेड लिखा हुआ है।

यहां एक बहुत ही बड़ा वॉटरफॉल दिखाई दे रहा है।

उसने सर्ट कोट पैंट पहना हुआ है।

पानी काफी शांत प्रतीत हो रहा है।

बहुत सारे बैनर लगे हुए दिख रहे हैं।

यह अलग अलग रंग फूलों के बने हुए हैं।

जमीन पर काफी टूटे फूलों के अवशेष बचे हुए हैं।

पुआल भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बोरियां भी रखी हुई है।

जिसमें लोहे की ग्रिलिंग लगी हुई है।

यह एक बड़ा स्टेडियम है।

यह एक बैंक का ब्रांच है।

यहां फूलों की माला लगी हुई है।

एक चेयर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक रेलवे प्लेटफार्म है।

बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

यह एक बेकरी शॉप जैसा लग रहा है।

ऊपर में क्रमजी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक हरे रंग का निशान बना हुआ है।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारी लाइटे और कैमरे लगे हुए दिख रहे हैं।

बड़े अक्षरों में प्रकाश भंडार लिखा हुआ है।

एक ग्रॉसरी का दुकान है।

यहां फूलों से सजावट की गई है।

यह एक किराना का दुकान है।

एक गुलाबी रंग का पिक कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक स्विच प्लाग दिखाई दे रहा है।

एक सफेद रंग का अलमीरा दिख रहा है।

एक पीला रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक पोडियम भी बना हुआ है ।

पीछे बहुत सारी झाड़ियां उगी हुई हैं।

एक बहुत ऊंचा पंडाल बना हुआ है।

यहां बहोत सारी बेंचे लगी हुई है।